और एक नरस भी मांस लगा के घूम रही हैं यहां पंखा भी चल रहा है।

और वहां दुकान पे एक आदमी बाहर बैठा हुआ है।

यह एक टम्पू भी नजर आ रहा है उधर पेड़ भी दिखाई दे रहे है।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

और खाली खेत नजर आ रहे हैं।

और कंपोटर भी दो तीन रखे हुए हैं।

आए हैं और मैज और एक प्लास्टिक का मुढ्ढा भी रखा हुआ--

पंखा भी लज्ञा हुआ है।

यहां बहुत सुंदर वाटिका सजी दिखाई दे रही है बहुत अच्छे गमले भी रखे हुए हैं बहुत --

यह बहुत बड़ी कंपनी नजर आ रही है यहां बहुत सारे ए_सी भी लगे हुए हैं।

बहुत सुंदर वाटिका सजा रखी है।

यह बहुत सुंदर मंदिर ईसा मसीह का दिख रहा है।